और डस्टबीन भी रखा हुआ है सामने यहां पर और एक फ्रिज भी है।

और मेन गेट पे कोई भिखारी खड़ा हुआ है यहां पर।

येलो व्हाइट और बेड भी रखे हुए हैं यहां पर।

यहां पर तीन चार औरतों खड़ी हुई है एक कुर्सी पर बुड्ढी औरत बैठी हुई है अंदर ए_टी_एम से लोग पैसे निकाल रहे दो आदमी है यहां पर--

यहां पर ईंडे रखी हुई हैं रेत है कुर्सी रखी हुई है मजदूर हैं काम करने वाले पिलर खड़े हो रहे हैं यहां पर पाइप पड़ा हुआ है।

स्विमिंग कर रहा है और साम पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पीछे एक घर है जिसमें कार खड़ी हुई है और सामने ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं यहां पर अपन कपड़े चेंज करते हैं।

ये गोल्ड की शॉप है जहां पर गोल्ड की चीजें मिलती हैं चेन सैट --

सामने यहां पर पेड़ ल रखे हुए हैं गुलाब का ही--

उसके हाथ में कोई सब्जी है और एक आदमी बेच रहा है।

ओर आदमी है मजदूर है उसके पीछे एक झोपड़ी है पीछे पेड़ है।

बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं साइड में एक पेड़ टूटा हुआ दिख रहा है यहां पर।

और ये मोर पूरा खुला हुआ मोर है।

यहां पर एक पीछे एक आदमी खड़ा हुआ है।

दो फ्लोर का यहां पर के_ऐफ_सी भी है खाने की चीजें भी मिलती हैं नीचे--

ये घर है यहां पर दो सोफे रखे हुए है।

मां-बाप है उनके एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा हुआ है।

यह एक स्कूल है यहां पर बोर्ड पे वैलकम लिखा हुआ है स्कूल का नाम लिखा हुआ है।